यहाँ बैनर लगाया हुआ है जो दूध का है यह एक बहुत ही अच्छी दूध है जिसे पीने में सेहत बनती है बॉडी बनती है जो बीमारी न होने के चान्सेस रहते है --

उ है। जिस पर चढ़ कर कही भी जा सकते हैं। दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक मोबाइल चला रहे हैं | एक उस मोबाइल को देख रहा है| मोबाइल में वो शायद गेम खेल रहे हैं।

लगे हुए है बहुत सारे बच्चे बड़े उम लड़कियां सब कोई बैठे हैं तो कोई फंक्शन में आये हैं ये पानी जो निकलता हैना वो बहुत अच्छा लगता है देखने में।

लाइट जो लगा हुआ है वो अलग अलग कलर के लगे हुआ है लीची बॉल लगे हुए है बहुत बड़े-बड़े घर है उसके ऊपर में इतने बड़े-बड़े लीची बॉल लगाए गए है जो बहुत ही अच्छे लगते है देखने में --

सुन्दर कन्याऐं हैं। बहुत अच्छी दिखती है क्या डांस करती है। दिखने में बहुत अच्छा लगता है।

अन चोरी न कर सके तो बहुत सारे सामान होते हैं आप देखोगे तो --

हरे कलर का साइकिल है बहुत खूबसूरत है रेंजर साइकिल --

जो बहुत ही अलग टाइप का दिखने में लगते हैं आसमान का भ्यू देखने में बहुत ही अच्छा लगता है।

बोहोत ही अच्छे-अच्छे सामान आप मनचाहे पसंद जो चाहो वो ले सकते हो।

आगे का भी लगाया जा सकता है जो बैनर लगा हुआ है ऊपर में और इ घर का लुक बहुत ही अच्छा --

एक कुआँ है इसके अंदर से पानी गया हुआ है उसके बगल में बहुत अच्छे-अच्छे ऊँचे उठाए गया है ताकि बीच में पानी नही जा सके --

ये पानी को एकदम सीधा ही जा रही है देखने में अलग ही लेवल का है।